उसके पास में उसका एक टायर निकल के रखा हुआ है पास में तीन चार पिलर हैं रेड कलर के।

मैं स्टेयर्स में चढ़ने के लिए रास्ता भी दिखा रखा--